यह मुज़्ज़फ़्फ़रनगर के एक पार्क की तस्वीर है जहाँ बहुत सारे लोग मात्रा में घूमने आते हैं।

यहाँ एक गार्ड बैठा हुआ दिख रहा है औ यहाँ पास ही में बहुत सारे हरे-हरे ऊँचे-ऊँचे पेड़ भी दिख रहे हैं।

यहाँ मैदान में कुछ बच्चे गेंद बल्ला खेलते हुए दिख रहे हैं और कुछ व्यक्ति खड़े हुए हैं और यहाँ सामने की ओर बहोत --

यह एक मैदान की तस्वीर है जो मुजफ्फर नगर में बना हुआ है। यहा लोग विभिन्न-विभिन्न खेलो को खेलने के लिए यहाँ पर आते है और यंहा सामने की और एक पानी की टंकी बनी दिख रही है।

सामान खरीदते हुए दिख रहे हैं और यहाँ बहोत सारी मोटर साइकिल भी रखी हुई हैं और पास ही में बहोत सारी कार भी रखी हुई हैं।

यह मुजफ्फर नगर की सबसे बड़ी मस्जिद की तस्वीर है जहाँ कारीगरों द्वारा विभिन्न विभिन्न कलाकारियां की गई है।

और आसपास बोहोत सारे सजावटी पेड़ भी लगे हुए हैं ओर यहाँ पास ही में एक कार गुजरती हुई दिख रही है |

यह मस्जिद की सामने की तस्वीर है जहां ऊंची - ऊंची इमारतें बनी हुई हैं जिनपर विभिन्न -विभिन्न पिंडियां भी बनी हुई है।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

और उपर सामने की ओर बोहोत सारे पंखे भी लगे हुए और यहाँ बोहोत सारे मार्शल भी लगे हुए --

यह मुजफ्फरनगर की मस्जिद की बाहर की तस्वीर है जहाँ ऊपर की और बहुत सारी पिंडिया दिख रही हैं|